सरकारी दफ्तर का जो है ऑफिस है और यहां पर सरकारी गाड़ियां लगी हुई है। जो कि किसी बहुत बड़े अफसर का गाड़ी है।

ये बहुत बड़ा मॉल है।

का दुकान है जहाँ पे फॉर्मल ड्रेस जो है बिकते हैं। उसी का दुकान है और फॉर्मल ड्रेस जो है काफ़ी ज्यादा महँगा होता है रेडीमेड कपड़ा के अपेक्षा काफ़ी ज्यादा ये महँगा होता है।

कोई मंदिर का मेन गेट है जो काफ़ी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में और ऐसे इस एरिया में काफ़ी ज्यादा खूबसूरत लगता है और इस एरिया को साफ़ रखना भी चाहिए जो कि बग़ल में एस.बी.आई. का ए.टी.एम. और ब्रै का बैंक का जैसा है और सामने पार्क पार्क टाइप का बहुत अच्छा दिख रहा है ।